इस शॉप में मुझे बहोत सारा इयरफोन और चार्जर लूक लगाया गया है वह बिक्री करते हुए दिखाई मिल रही है।

इस पिक्चर मे मुझे बहोत सारा आदमी दिखाई मिल रही है।

ओ मुझे एक फ्लैग भी दिखाई मिल रही है।

इस रूम की कलर जो सफेद और कलर में है।

इस पिक्चर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है।

इस गेट पर वेलकम टू दी अं दिवा दिरंग दिरंग अर्जोंग लिखा हुआ दिखाई मिल रही है।

और साइड मे मुझे एक बड़ा सा घर भी दिखाई दे रही है।

और फिर यहाँ में मुझे एस_बी_आई लिखा हुआ भी दिखाई मिल रही है साइड मे--

इस पिक्चर में होटल दिखाई दे रही है।